यह एक बर्फीला तूफान टाइप का लग रहा है इधर के पेड़- पौधों को देखकर एसा लग रहा है जैसे कि बहोत तेज हवा चल हवा चल रही हैं।

यह एक बहुत ही अच्छा संग्राहलय लग रहा है ये सब अंदर से ऐसा लग रहा जैसा बहुत ही महापुरुष का कुछ है।

एवं प्लास्टिक दुकान प्लास्टिक की भी दुकान है बर्तन वर्तन आधी --

के बहार पैड पौधे लगो लगे हुए तथा ये दर्शा रहे है ये ऐसा लग रहा जेसा कोई जंगल टाइप का हो।

यह एक कार्यालय कार्यपालन अभियंत है जो की निर्माण संभान राजनांदगांव गाँव का नाम राजनांदगांव है जो की बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है।

इसमे बहोत ही पेड़ पौधे लगे गए है एक पोस्टर इसका नाम भी लिखा गया है ग्रीन कलर --

यह एक बैंक है जिसका नाम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है यह भी एक तरीके का बैंक है जिसके अंदर आप जा सक--